यहाँ पर सामने बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है एक ऑटो भी खड़ा हुआ है बहुत सारे लोग खड़े हुए है जोकि अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए है एक आदमी दिखाई दे रहा है पीली कलर की शर्ट पहना हुआ है।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

जैसे की मै देख रही यहाँ पर एक आआआ सामने अअअ चोहरहा का एक बीच में ओपो लगा हुआ है।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

ये मोन्यूमेंट पत्थर से बना हुआ है यहाँ पर छोटी- छोटी आ-पत्थर के बैठने के भी बने हुए है सामने इनका खाली एरिया भी छूटा हुआ है।